स्कूल के सामने ही एक पानी का टॉवर है।

और सामने एक खाली मैदान भी है और स्कूल गांव का एक गवर्नमेंट स्कूल है।

ओ पतंजलि दवा का नमकीन नमकीन पर दवा दे रही है।

स्पीकर में कुछ कुछ सा रंग का स्टीकर भी लगा हुआ है।

पत्थरों के बीच है ये झरना प्रवाहित हो रही है।

उसका पानी बहुत सफेद है।

और इधर ए कुछ लोग प्रैक्टिस भी कर रहा है क्रिकेट का प्रैक्टिस कर रहा है।

उधर कुछ लोग खड़े होकर फोटो खींच रही है।